ये एक गुरु स्थान है जहां पे जैसे सत्संग वगैरा होता है या गुरु वाणी वगैरा होती है इसके बार --

और ये जाने का रास्ता है सामने की तर --